यह एक जगह है जहां पर एक मेंन गेट लगा हुआ है।

काफी सुंदर नीचे की ओर डेकोरेशन है माल तीन चार मंजिल का है।

मकान पर कपड़े सूख रहे हैं कुछ लोग खड़े हुये हैं और बहोत सारी विंडोज भी हैं।

और जहां पर सुंदर सुंदर प्रतिमाएं रखी हुई हैं।

इमारत व्हाइट कलर से पेंट है और ग्रीन कलर से पेंट है।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

कुछ जिराफ आमने सामने गेट पर खड़े हुए हैं।

गार्डन में काफी बड़े बड़े पेड़ हैं।

कुछ बाहर की ओर लाइटिंग है कुछ अंदर की ओर लाइटिंग है।

एक आदमी बाहर की ओर आ रहा है उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं।

ने पिंक और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई है उसके हाथ में एक कागज है।

पीछे वाले घर पर एक बोतल और कुछ सामान रखा है।

जिसके दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है और एक आदमी बाहर बैठा हुआ है।

यह एक थाना है जहां पर बाहर एक थानेदार है।

गाड़ी की धुलाई कर रहा है गाड़ी काफी ऊपर है।

नीचे डस्टबिन रखें हैं और पर वाइट कलर के पर्दे लगे हैं पंखे है।

यह एक बड़ा गार्डन जैसा है जिसमें एक लड़का बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग में काफी विंडो हैं। कुछ पेड़ लगे हैं। कुछ बड़े से कुछ छोटे से और यहां पर बहोत सारी घास लगी हैं।

एक आदमी लैपटॉप पर खड़ा हुआ हैं।

जिसमें दो में चैनल गेट लगे हैं।

एक बेड पड़ा है। बेड पर वाइट कलर का चादर है।

और नीचे का फर्श काफी व्हाइट कलर का है।

बकरियां जिसमें चारा खा रही है वो भूरे कलर का है।

यह एक कॉलेज है जहां बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

दुकानों के बाहर बहुत सारे कलर की गाड़ियां खड़ी हैं जिनमें स्कूटी बाइक --

यहां पर अगल बगल दुकाने लगी हुई हैं।